यह दृश्य जिम का है जहाँ पे बहुत सारे गुब्बारे से सजावट की हुई है।

यहां पे अंदर घास है और उसमें पू एक मूर्ति बना हुआ--

और इसकी पैंडल और इसका हैंडल और शीट काले रंग का है।

व्यक्ति बैठा हुआ है जोकि काले और सफेद रंग का चेक शर्ट पहना हुआ--

और उसके पीछे कुछ बाइक भी रखी हुई है इसके पीछे कुछ दुकानें हैं।

एक पैर ऊपर है उसने मोजा पहना हुआ है।

और महरूम रंग का दुप्पटा पहनी हुई है।

बिल्डिंग के बाहर ऐ_सी का वेंटीलेटर है।

यह दृश्य एक रेस्टोरेंट का है जहां पे बहुत सारे टेबल्स और चेयर लगी हुई--

यह एक व्यक्ति है और उसके बगल में एक महिला है इसके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं।

इसके पास बहोत सारे शो प्लांट्स लगे हुए है जो की गमले पे लगी हुई है।

और इसके नीचे मिट्टी का जमीन है और कहीं कहीं घास है मैदान--

दृश्य मे एक लड़की है जो कि डांस कर रही है वो।

यहां रंग एक बिल्डिंग का है जिसका रंग ग्रे और पीला है।

एक बस का रंग लाल और ऑरेंज और एक बस का रंग सफेद और ब्लू है।